पीछे पहाड़ है। कुछ आ बढ़िया सीनरी दिख रही है। इनमे तो बाइक के दोनों सड़क के साइड पे खड़े हुई है। पीछे--

आ यहाँ पर तीन लेडीज और दो एक जेंट्स और दो बच्चे है। खड़े हुए है। जो फोटो खींचा रहे है। अपनी पीछे एक बाल्टी रखी और--

आ जेंट्स ने सर मैं एक टोकरी रखी हुए है। जिसमे सायद आ पूजा का सामान होगा। आ इन्होने वाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर का पेंट --

और एक आ जन अंदर की ओर जन जा रहे है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़िया खड़ी है और ये एक वेड़िंग पॉइन्ट है। जहा पर पीछे बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी है।

यह एक मच्छी मार्केट की फोटो है। जहां पे की एक लेडी सेलर बैठे हुए। कुछ बदिये कुछ मोटी छोटी है।

पीछे कुछ पेड़ दिख रहे है। कुछ कुछ ऑफिस में यहां पेड़--